एक सब्जी की दुकान है। इस सब्जी की दुकान में बहुत सारे सब्जी रखे गए हैं। यहाँ पे इस दुकान में फुलगोभी पत्तागोभी टमाटर --

यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति बेच रहें हैं। यहाँ पे सभी चीज़ के मूर्ति बेचे जा रहें हैं। फूल का गुलदस्ता भी बेच रहें हैं बहुत सारे फूल यहाँ पे बेचने के लिए लाए हैं। इस बाजार में बहुत सारे आदमी --

यहाँ पे एक मशीन खराब है जो की मिस्त्री टिक कर रहे है जोकि बहुत सारे आदमी यहाँ पे आये हुए है बहुत सारा लड़का यहाँ पे खड़ा है और मिस्त्री मशीन टिक कर रहे है और बांस पे बहुत सारे पंडाल --

यह एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में टेबल पे खाने की चीज रखी हुई है। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे सब लोग खाते हैं। यहाँ पे एक चम्मच और एक काटा रखा गया है चटनी भी है।